इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहां पर कुछ हथियार से दिखाई दे रहे हैं और--

और इसके आगे एक लड़का भी--

अच्छे ढंग से देख सकते हैं इससे एक बेड है।

मसाज और थ्रेडिंग करने के लिए--

दिल से दिख रहा है जो मंदिर--